यहां पर देखिए यहां आपको एक भैया दिखाई दे रहे हैं लेकिन जो भैया अपना एक हाथ ब्लैक कलर के पहने हैं उनके हाथ में फोन है और देखिए पीछे और भी भैया लोग खड़े हैं।

यहाँ पे देखिए एक ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा देखिए ग्राउन्ड में बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे है और यहाँ पे देखिए एक अंकल साइकिल से भी है और यहाँ के जो पेड़ पौधे जो है वह बहुत बड़े है यहाँ पे एक खम्बा भी लगा वाइट कलर का बहुत ही ऊंचा।

यहाँ पर देखिए आपको एक ग्लास पे पोस्टर दिखाई दे रहा होगा और अंदर एक मशीन रखी हुई है और यहाँ पर देखिए आपको वाल का कलर वाल का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा होगा।

यहा पर देखिए आपको बहुत सारी लाइट दिखाई दे रही होगी देखिए यहा पर हर कलर की चेयर्स भी रखी हुवी है देखिए यहा लाइट जल रही है ब्लू और वाईट कलर की और लाइट बहुत ही अच्छी लग रही है यहा बहुत सारी भीड़ है ।

यहा पर देखिए बोहोत सारे टेबल लगे हुवे है और देखिए कुछ चार्ट नीचे पड़े हुवे है यहा पे और कुछ चार्ट और कुछ सीज़र और कलर्स कुछ टेबल पे रखे हुवे है कुछ लड़के बेठे है कुछ लड़के खड़े है।

यहा पर देखिए शटर लगा हुवा है यहा के जो वॉलस ही वाईट कलर के थोड़ी गंदी हो चुकी है यहा पे देखीये ए_टी_एम लगा हुवा है और देखिए उसके बहार आ दीवार पे पोस्टर लगा हुवा है यहा पे दो ए_सी रखी हुवी है।

यहा पर देखिए आप को स्लिपर्स दिखाई दे रही होगी और देखिए यहा पे जो सीड़ है चड़ने के लिए कपड़ा बिछा हुवा है। यहा पे देखिए एक अच्छा टेंट लगा हुवा कुछ फलवोर्स भी लगे हुवे फलवोर्स बहुत ही अच्छे लग रहे है देखने मे ।

यहाँ पर देखिए एक डॉक्टर है जिन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है उनके हाथ मे एक मशीन है और देखिए यहाँ पे उम दिवाल पे कुछ फोटो लगी हुई है।

हा यहाँ पर देखिए आ एक अंकल लेटे है अंकल के हाथ में आ बहुत सारी अंगूठी है और एक हाथ पे वाच है और देखिए वाल देखिए वाल कलर व्हाइट कलर का है देखिए वाल पे एक स्विच बॉक्स लगा हुआ है उसमें एक प्लग लगा हुआ है यहाँ पर देखिए येल्लो कलर का पर्दा दिखाई दे रहा है ।